ये एक दुकान है एक कमरा है कमरे में बहुत सारे गन रखे गई हैं।

पार्क के किनारे एक तरफ बीचोंबीच --

गोलंबर बना हुआ गोलंबर में एक पेड़ लगा हुआ है बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधे यहां पे लगे हुए हैं।

जंगल झाड़ियां कंटीले घास उगे हुए हैं।

ये एक ऐसा स्थान पे है जहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी के थीं ठीक सामने --

खड़े हैं व उनके सर पे हेलमेट लगा हुआ है।

ये एक खेत है खेत में गोभी के पौधे लगे हुए हैं।

जिसे हम बंदा गोभी भी कहते हैं पत्ता गोभी भी कहते हैं।

लोहे का सामान रखा गया है ऊपर छत पे प्रकाश के लिए जगह-जगह छेद बने हुए हैं।

जमीन भी ब्लू कलर का है जमीन पे कुछ सामान भी बिखरे पड़े हैं।

फॉर विलर खड़ी है ठीक सामने चरपाई रखी है चरपाई पे कुछ बिछाया गया है।

ये एक फूल का बगीचा है बगीचे में बहुत सारे--

मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है बहुत सारी मोटरसाइकिल है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है खम खंबा खड़ा हुआ है।

चारों तरफ ग्रीन कलर की ही पेंटिंग हुई है।

ये एक स्टोर रूम है स्टोर रूम में बहुत सारी मशीन रखी गई है कुछ गत्ते के अंदर पैक है कुछ खुले हुए मशीन दिखाई दे रहे हैं।

ये प्लेटफार्म का सीन है प्लेटफार्म पर पटरी बनी हुई है पटरी के ठीक सामने मकान है दिखाई दे रहा है --

चारो तरफ रेलवे का दीवार भी बना हुआ है।

कांच की दि रैक बनी हुई है रैक पर बहुत सारे सामान रखे हैं।

में पौधे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे ओल्ड मकान भी हैं एक औरत घूमने के लिए जा रही है।

रेक पर बहुत सारी किताब रखी गई हैं।

पेड़ भी है जमीन भी वाइट कलर की है।

ठीक सामने एक रर रास्ता भी है।

दुकान के अगल-बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं एक बोर्ड भी टंगा हुआ है।

ये कैसा जगह है जहां देखकर बहुत सुंदर लग रहा है।

यहां मेज है मेज पे कुछ प्लेटें रखे गए हैं प्लेट में खाने के समान रखे --

और शांत वातावरण है ये यहां पे --